ये चित्र में हम्थे एक साणु बाटू च दिख्याणु लग्युं जगह किनारा हम्थे झाड़ी-झुड़ी और कुछ छोटी-छोटी डाली-डुली दिख्याणा लगीं।

पार में हम्थे कुछ तालाब का दिख्याणु लग्यूं पार कुछ पहाड़ भी छन ऐंच बदल च और देवरु च साफ़ लगणू।